वो लोहे का सामान भी रखा गया है बहुत सारे और पीछे बहुत बड़ी बड़ी सामने भी दिखाई दे रही है।

ये बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल दिखाई दे रहा है इस पंडाल मे बहुत सारी मूर्तीया भी बनाई गई है बहुत सारे मूर्तियों को रखा गया है बहुत अच्छे से सजाया गया है।

क्लासरूम के अंदर की इमेज है इसमे बहुत सारी बड़ी बड़ी लौहै की खिड़कियाँ भी दिख रही है ग्रिल का गेट भी दिख रहा है छोटे-छोटे पेड पौधे भी दिखाई दे रहे है दो चार बेंचे भी दिखाई दे रही है।

और बोहोत सारे बलूंस भी लगे हुए हैं ग्रीन व्हाइट ऑरेंज कलर के बोहोत सारी लाइटे भी लगी हुई है और डेक्स ऑरेंज और येलो कलर का दिखाई दे रहा--

अ बहोत सारी सब्जियों की दुकान भी लगी है झोले भी दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ की जमीने पक्की है।

वाइट कलर के बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके सामने एक लैंप पोस्ट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बोहोत सारी तारे भी दिखाई दे रही है एक रेड और ग्रीन कलर का झण्डा दिखाई दे रहा है पास मे एक होटल भी दिखाई दे रहा है जहाँ एक लड़का खड़ा है उसके सामने बोहोत सारी लकड़ियाँ रखी है दो बाइके रखी हुई है एक आदमी छाता लेके जा रहा है ।

वाइट कलर के बोहोत सारे पर्दे भी लगाए गए हैं एक पीछे बैनर भी लगाया गया है एक लड़का फुलझड़ी लिया हुआ है हाथ में जिसमें से कलर्स निकल रहे है तारे भी दिखाई दे रही है पीछे चांद भी दिखाई दे रहा है।